एक जगह का चित्र है| जिसमें आसमान दिखाई दे रहा है हरे रंग के पेड़ लगे हुए हैं|

एक जगह का चित्र है जिसमे एक मकान दिखाई दे रहा है।

जगह का चित्र है। जिसमें सफेद कलर की कुर्सियां और टेबल दिखाई दे रहा है पिले और काले रंग की --